जिसमें गजब की शाइन लिखा है और कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे भी हैं।

जैसा कि मैं देख रहा हूं।

और जमीन पर बोहोत सारे घास --